और सुन्दर से बनाया है।

और इधर एक सारे बैग रखा हुआ है |

और उधर भी घर है।

और सीढ़ी है सीढ़ी से जाने लिए बैंक पैसा उठाने वाला बैंक है। --